बाइक खड़ी है जिस पे एक व्यक्ति भी बैठा है और पास में एक पेड़ है जिसकी छाया रोड पे पड़ रही है।

और पास में एक हैंडलूम भी दिख रहा है।

और इसमें काफी भीड़ है और कुछ लोग आगे खड़े हैं।

जिसके आगे काफी जगह रेत है।